ठेलो के पीछे एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य दिखाती है जिसकी दीवालें व छत सफेद रंग से रंगी हुई हैं।

इस तस्वीर में पानी पर कुछ लोग अपनी नाव चला रहे हैं।

यह तस्वीर किसी पार्क या गार्डेन का दृश्य दिखाती है।